और एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका रंग नीला कलर का है।

बच्चे बाल कटवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नदी में बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है।

जिसमे बरांडे में बैठ के एक लड़की पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रही हैं।

पीछे कि ओर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसके आगे बहुत सारी पीली कलर की बसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां बहोत सारे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने एक तौलिया और बनियान टंगी हुई दिखाई दे रही है।

और ऊपर की ओर कोयला रखने वाली मटके की वो दिखाई दे रही है।

और आगे की साइड प्याज खीरा शिमला मिर्च वगैरा सब राखी हुई दिख रही है।

अ जिसका रंग पीले कलर का है और लाल कलर से जय मां वैष्णो आयरन स्टोर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बच्चे ड्राइंग करते हुए दिखाई दे रहे है।